बड़ा सा ब्लू कलर का ऊपर से बहेता हुआ झरना आ--

बार्डर बना हुआ है उसपे फूलों का--

यहां पर एक बस दिख--

के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है।

जिसमें से बहोत सारा पानी--

कलर का स्टेज दिखाई दे रहा है।

ये एक रस्सी बंधी हुई दिख रही है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा गार्डन के अंदर डेकोरेशन करा हुआ इस्टेज दिख--

यहां पर एक प्लास्टिक टेप दिख रहा--

है इसके आगे एक वृक्ष जैसा बना--

वो से डेकोरेशन करा हुआ हैं।

कुछ बाहर बने दिख रहे--

यहां एक टाटा मोटर्स का बड़ा सरवसिंग का--

उसके नीचे दो मूर्ति रखी है।